यहां लकड़ी की फर्नीचर बनाई जा रही है जैसे डेस्क ।

यहां एक रास्ता निकाला हुआ है यहां बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं यहां कुछ गाड़ियां भी खड़ी है।

यहां बहुत सारे लोग व्यायाम कर रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा होटल दिख रहा है।

यहां कुछ बकरियां रखी हुई है जो चारा खा रहे हैं।

यहां छोटा सा रास्ता भी बना हुआ है।

यहां बहुत सारे टमाटर रखे हुए हैं।

यहां एक ऐ_सी भी लगा हुआ है यहां बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं।

यहां नीचे में कुछ कार्टून रखे हुए हैं।

यहां बैठने के लिए बनाया गया है।

यहां कुछ लोग सेंटा बने हुए हैं।

यहां कुछ लोग गाड़ियों पर चल रहे हैं।

यहां कुछ लोग प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं यहां नेट लगी हुई है।

यहां हरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं यहां एक मकान बन रहा है।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

यह एक नर्सरी का दृश्य है यहां बहुत सारे पौधे गमले में रखे हुए हैं।

यह एक कारखाने का दृश्य दिखाई दे रहा है।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

यहां बहुत सारी तारें दीवार में जुड़ी हुई है।

यहां कुछ बल्बे भी लगी हुई है यह काफी साफ सफा है।

यह एक बहुत बड़ा मंदिर का दृश्य है।

यहां एक छोटा रास्ता भी निकला हुआ है।